यहां पर बहुत सारे द्वाजे खिड़किया हैं।

मुझे लगता है कि यहां पर मेला लग रहा है।

रखी गई है यहा बहोत ही बरा स्टोर है।

बहुत सारे घर दिखाई दे रहे हैं और और--

यहां पर बहोत सारे पोस्टर लगाये गए--

एक घर दिखाई दे रहा है जो कि बहोत ही बड़ा है और साइड में--

बहोत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो कि पढ रहे--

इसने काली चादर ओढ़ी हुई है।

जो कि कुछ टेंट के अंदर घुसे हुए हैं।

बहोत ही साफ है और एक छोटा जैसा क्षेत्र है।

यहां पर मुझे एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है जो कि बहोत ही खुला है।

एक दुकान दिखाई दे रही है जो की--

बहुत ही सुंदर लग रहा है यहां पर साफ सफाई का पूरा--